लाइट के खंभे पड़े हैं लाइन वाइज --

माल के ऊपर का कलर रेड और ग्रे कलर का है।

ये एक भाई खड़ा है पूल के ऊपर--

कलरिंग कलरिंग के ड्रेसे पहने हुए--

बीच में बहुत बड़ा मैदान है।